और उसके सामने वाइट कलर की सीढियाँ लगी है। झोपड़ी के पीछे बोहत सारे पेड़ नज़र आ रहे है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें चार फ्लोर दिख रहे है। बालकनी दिख रही है चार--

ए वाइट कलर की चेयर पे गिटार हाथ में लेके बैठे हुए है। एक माइक रखा हुआ है उनके सामने पी उनके पीछे एक--

और दिया बत्ती करने का सामान रखा हुआ है। एक आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है।

यहाँ पे एक रोड दिखाई दे रहा है। रोड के दोनों साइड में पेड़- पौधे लगे और घास लगी हुई है।

टेबल रखा हुआ है और ऊपर बोर्ड लगा हुआ जिसपे लिखा हुआ है यू.को बैंक --

और पीछे की साइड एक पहाड़ दिखाई दे रहा है एक कार खड़ी हुई है सफ़ेद कलर की--

सीमेंट का मसाला पड़ा हुआ है। और एक आदमी हाथ में तसला लेके अ सीमेंट न--

और एक फैक्ट्री दिख रही है।

जिसपे लिखा हुआ है एक्सिस बैंक । अंदर--

यहाँ पे एक इमारत दिख रही है। इमारत--

एक होदी बनी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है।

यहाँ पे दो एक दुकान दिख रही है जिसके--

यहाँ कुछ पेड़ लगे है और छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए है।

कुछ लोग स्विमिंग पूल के अंदर है और कुछ बाहर खड़े हुए है।

टिन शेड बना हुआ है। और चारो टिन शेड के चारो तरफ पेड़ और पौधे लगे हुए दिख रहे--

यहाँ पे एक अ रो सड़क दिख रही है। सड़क के--

मैट बिछा हुआ है जमीन पे जो ब्लू कलर का। बीच में नेट लगा हुआ है।

यहाँ पे एक फैक्ट्री दिख रही है जिसमें कुछ लोहे का सामान रखा हुआ दिख रहा। कुछ--

यहाँ पे एक शादी हॉल दिख रहा है।

बिल्डिंग का गेट बना हुआ है उसके ऊपर एक अ एक--

यहाँ पे एक नदी दिख रही है। नदी के किनारें रेत और कुछ पत्थ--

के निशान बने हुए पर खिड़की के गेट नहीं लगे हुए है। सामने से भी एक गेट दिख रहा है।